ये एक फ्लॉइट दिखाई दे रहा है।

ये विनी घास लगी हुई है दीवारों पे और पेड़ पौधे उगे है।

इस पिक्चर में एक आदमी मोबाइल लिए सेल्फी खींच रहा है।

ये एक चर्च है जहां शादी कीए ज कराई जा रही है।